कुछ लोग खड़े हैं और पीछे स पीछे बोहोत सारी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग दिख रही हैं।

एक कपड़ा बिछा है। कपड़े के ऊपर एक शर्ट है और एक आदमी शर्ट को प्रेस कर रहा है।

बोहोत सारें लड़के अ दौड़ते हुए जोगिंग करतें हुए दिख रहें हैं।

विभिन्न प्रकार के फल रखें हैं। काला अंगूर हरा अंगूर तरबूज खरबूज --

अ टॉफीओ के डिब्बे रखे हैं। शैम्पू के पाउच लटकें हैं। क्रीम के पाउच ऊपर की तरफ लटकें हैं।